यह एक घर दिखाई दे रहा है जिसके--

यह एक मंदिर है जिसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हुई है और एक पंडित जी दिया जला रहे --

यह एक गार्डन है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं और बच्चे खेल रहे और पेड़ हरे भरे हैं और उनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां एक बॉडी लगी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि हरे भरे हैं और उनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही --

और इसके अंदर एक लेडी साड़ी पहने हुए पेड़ों के पास खड़ी है और दो आदमी घूम रहे हैं एक हरे कलर की पाइप भी पड़ी है।

यहां बहुत सारे ऊंट है जो की बैठे हैं और आधे खड़े हैं।

और बहुत सारे पेड़ भी हैं जिनके पत्तियां दिखाई दे रही है और हरे भरे भी हैं और --

यहां एक मेला लगा हुआ है और बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे रंग बिरंगी लाइटें जली हुई है।

एक आदमी कुछ पथ्थरों के ऊपर बैठकर फ फोटो क्लिक करा रहा है और पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो कि हरे भरे --

और आस पास में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनके पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं और यह पेड़ हरा भरा है।

यह एक शॉप है जिसके अंदर दो नीले कलर की कुर्सी रखी हुई है।

एक बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है ईसके पास में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है और इसके आगे बोर्ड पर फॉरवर्ड लिखा हुआ है।

बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं और बहुत सारे नीले कलर के कुछ बोतलां रखी हुई है।

और दीवार पर कुछ पिक्चर लटक रही है और आस पास में दो फ्रिज पड़े हैं जो की डी फ्रिज है जिनके ऊपर एक --